यहाँ पर एक दूकान नजर आ रही है जहां पर --

और ऊपर एक लरी रंग के कलर दिख रहा है और नीला रंग का कलर और बगल मे पेड़ दिख रहे है।

यहाँ पर एक रोड नजर आ रही है उसमे टैक्सी टेंपू चलते हुए दिखाई दे रही है।

यहाँ पर सामने एक दिखाई दे रहा है जो पूरा ईट से बना हुआ है।

यहाँ पर तीन लोग एक-दूसरे के हाथ पकड़े हुए खड़े है पीछे एक बल्ब भी है।

कलश रखा है दो थाली रखी है।

यहाँ पर हरे-भरे पेड़ दिख --

इसमें बहोत ज्यादा ट्रैफिक नजर आ रहा है।

ब्राउन कलर का है ये सब है जो नीले रंग के कपड़े के ऊपर रखे हुए है।